यह एक फील्ड है जिसके सामने दो बच्चे खेल रहे हैं और इसके सामने बच्चे के खेलने की खेलने की व्यवस्था भी की गई है जिसके सामने अनेक-अनेक तरह के पोधे भी लगे हुए है जो कि बहुत हरे-भरे दिख रहे है। इसके आस-पास बहुत सारे --

यह एगो मंदिर है जिसके सामने गौतम बु बुद्ध के मूर्तियाँ बैठी हुई हैं और यह मंदिर बहुत ही --